और ऊपर बॉक्स भी रखे हुए हैं।

घर में एक बराबर में पोस्टर है।

साइड में कुछ पुरानी सी टोकरी सी बना रखी है।

पीछे ऑल आउट लगा हुआ है बोर्ड है।

एक पोस्टर पे लिखा हुआ है ग्रेट डे --

कुछ बेंच है यहां पर कुछ गैलरी छूटी हुई है।

यहां पर एक दुकान है।

दुकान में कुछ सामान टंग रहे हैं।

इसमें अलग अलग तरह कि मच्छी है।

पीछे बड़ी बड़ी मशीने रखी हुई हैं।

छोटी छोटी कुर्सी रखी हुई हैं।

टीन शेड घिरी हुई है।

कुछ पट्टी रखी हुई है।

पीछे को टेंट लगा हुआ है।

यहां पर कुछ जड़े कुछ लोग मोमबत्ती बान रही है।

जिम का पोस्टर लगा हुआ है छोटी छोटी बेंच है।

जिनमे एक इनकी कुर्सी पड़ी हुई है कुर्सी पर टॉवल पड़ा हुआ है।

यहां पर एक हिरन है।

बराबर में कपड़ों की दुकान है।

यहां पर एक टेंपल है

बहुत ही बड़ा ग्राउंड है यहां पर।

प्ले में कुछ झल्लर गिर रखी है।

ये दो लड़की इधर खड़ी हुई है जो फोन देख रही है।

यहां पर कुछ मंदिर है।

पीछे एक पैड़ी है बड़ी पैड़ी है।

पीछे लकड़ियां लड़का खड़े हुए है।

यहां पर एक अस्पताड़ है।

अस्पताल में कुछ यहां पर फायर लगे हुए हैं।

पीछे टेबल है बड़ी टेबल है।

पीछे कुछ छोटे छोटे पहाड़ हैं।

तीन चार बोट पीछे है।

एक खेत पर सफेद गाड़ी खड़ी हुई है।

यहां में टेबल के पीछे एक टेबल है।

कुछ बादल छाए हुए हैं सफेद सफेद से।

एक बैग को सेनेटाइजर कर रहा है एक लड़की के बैग को।

अट्ठासी ग्यारह पिचाश पंचानबे इकहत्तर जीरो दो।

पहाड़ों पर पीछे बड़ी बड़ी सी पत्तियां है।

पंखे है और छोटे छोटे पाइप हो रही है।

कुछ साइड में कुछ पेड़ पौधे हैं।

इसपे लिखा हुआ है के_इ_आर_ए_एल_ए ।

लिखा हुआ है वेज नॉनवेज रेस्टोरेंट है।

एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है।

यहाँ पर एक सब्जी वाले की दुकान है जिसमें दुकान पर पत्ता गोभी रखी हुई है।

कुछ छोटे छोटे बर्तन रखे हुए हैं।

एक ने बैग टांग रखा है फोन चला रहा है।

एक बच्चा एक लड़के के साथ खड़ा हुआ फोटो खिंचवा रहा है।

यहां पर एक ट्यूब रखी हुई है और जिस पे लिखा हुआ है।

यहां पर एक होटल रूम है जिसमें बहुत से रूम देख रहे हैं।

ए टी आई वी ई केयर सेंटर लिखा हुआ है।

जिसमें अलग अलग वूफर रखे हुए हैं।

पीछे साइड में कुछ लोहे का सामान पड़ा हुआ है।